इस तस्वीर में बहुत सारे लोग है तस्वीर में--

और लाइटे लगी हुई है इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स है और घर है।

स्कूल के बच्चें है सब एक कतार में खड़े हुए तस्वीर में सब ने--